यह फोटो एक रस्ता की है जिसमे एक व्यक्ति चलता हुआ नजर आ रहा है और एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है।

जिसके बाहर दो बाइक खड़े हुए है और इसके अंदर बहोत से व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

जिस के किनारों पर बहुत से पेड़-पौधे लगे हुए है और यहाँ पर एक व्यक्ति चलता हुआ नजर भी आ रहा है और यहाँ पर पानी की पाइप लाइन भी डली हुई है।

यह फोटो एक गार्डन की है जिसमे कुछ व्यक्ति बैठे हुए है और कुछ व्यक्ति--

बात चीत कर रहे और यह एक व्यक्ति खड़ा हुआ है इस गार्डन मे बहोत --

यह फोटो एक डांस क्लाससेस की है जिसमे एक--

जो कुछ व्यक्ति बात कर रहे है एवं कुछ व्यक्ति बैठे हुए है।

-- और कुछ एक रिक्शा अभी चल रहा है और एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है।